जिसमे एक बहोत बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है। आस पास कुछ इमारते दिखाई दे रही है। आसमान दिख रहा है और घुप की तेज रोशनी दिखाई दे रही है और ये एक सड़क --

एक इमारत बनी हुई है जिसको फूल लगाया गया है आस पास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे यह दिखाई दे रहा है कि ये एक दुकान है जिसमे कुछ लिखा हुआ है।